चित्र में मुझे सैंडविच दिख रहा है और एक लड़का बैठा दिख रहा--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

और चित्र में एक व्यक्ति बैठा दिख रहा है।

चित्र पे मुझे टेप रखा हुआ दिख रहा है और चित्र पे मुझे प्लास आना और कई सारी चीजें रखी दिख रही हैं।

चित्र में मुझे एक पैलेस का स्टेज दिख रहा है।

और चित्र मे मुझे केला रखे हुए दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे कई सारे कंप्यूटर रखे हुए दिख रहे--